इस फोटो में मुझे लाइट दिखाई दे--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

इस फोटो में मुझे लाइट दिखाई दे--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

इस फोटो में मुझे बस दिखाई दे रही है।

इस फोटो मे मुझे बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे है।

इस फोटो में मुझे कांच का दरवाजा दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे खिड़कियां दिखाई दे रही है।